और कुछ टंगा हुआ समान दिखाई दे रहा है अन्य समान भी दिखाई दे रहा है अलमारी दिखाई दे रही है।

एक ऑफिस दिखाई दे रहा है अंदर का केबिन है जहां बाहर से सब दिखाई दे रहा काँच लगा हुआ है।

यह कुछ लड़कियाँ दिखाई दे रहीं हैं जो कि डान्स करती हुई अवस्था मे दिखाई दे रही है।

इन्होंने गुलाबी लाल नीले परपल काले इत्यादि कलर के कपड़े पहने हुए हैं पीछे कुछ बैलून दिखाई दे रहें हैं ऑरेंज सफेद हरे --

पानी दिखाई दे रहा है ऊपर से झरता हुआ झरने जैसा पीछे पेड़ भी दिखाई दे रहा है जिसकी पत्तियां दिखाई दे रही है।

चेहरा दिखाया गया है मेक-अप किया हुआ नीचे टेबल रखी है जिसपे गुलदान रखे हुए है गुलदस्ते में फूल लगे है कुछ क्यू.आर. कोड भी रखे है कुर्सी दिखाई दे रही है।

एक गेट दिखाई दे रहा है दरवाजा है जो कि पर्पल कलर का है ये आधा खुला हुआ है और पीछे कुछ घर दिखाई दे रहे बाहर कुछ दुकाने दिखाई दे रही है एक खुली है एक बंद है।

यहाँ कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं चट्टाने दिखाई दे रही है छोटी बड़ी पेड़ भी दिखाई दे रहे है कुछ सूखे पेड़ दिखाई दे रहे है कुछ हरे भरे दिखाई दे रहे है।